दिख रहा है वाइट कलर का ब्लू कलर का--

यहां पर हमें दिख रहा है ब्लू कलर का आसमान--

पिंक कलर की शर्ट में कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं साथ में कुछ टोपिया --

टेबल दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के--